चित्र में आपको कई सारे वाहने दिख रही है।

इस तस्वीर में आपको दिन का समय दिख रहा है।

इस चित्र में आपको एक मनुष्य दिख रहा है ।

इस तस्वीर में आपको एक गेट दिख रहा है।

इस पिक्चर में आप मैट को देख सकते हैं।

इस तस्वीर में आपको दिन का समय दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में आप एक बड़ी सी इमारत को देख सकते हैं ।

इस फोटो में आप एक ऑफिस को देख सकते हैं।

इस छवि में आप एक बड़ा सा घर देख सकते हैं।

इस तस्वीर में आपको एक बड़ी सी गार्डन दिख रही है।

इस तस्वीर में आप एक केक को देख सकते हैं।

इस तस्वीर में आपको एक बड़ी सी टेबल दिख रही है।